को बनाने में मदद कर रही है ।

यह एक बस स्टैंड है इस बस स्टैंड में बहुत सारी बसें खड़ी रहती है और बहुत सारी बसें आते-जाते रहती है।